बहुत सारे आदमी नजर पड़ रहे हैं।

यहां पर मुझे भोले जी की एक मूर्ति नजर आ रही है।

यह एक खेलने का ग्राउंड नजर आ रहा है।

नीचे कुछ सब्जी लगी हुई हैं कुछ छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।